इसके नदी में छोटे-छोटे पत्थर रखे हुए है किनारे --

जो बहुत ही सुंदर है।

पाँच-छह बस हैं ।

व दो पेड़ है एक सुखा पेड़ है।

यहाँ बाहर बाजार भी है दुकान सब है आदमी --

और आदमी रिक्शे पर बैठ रहे है।

एक प्लेट में चावल दाल सब्जी सलाद रखा हुआ है ।